यह एक छठ घाट का फोटो है।

पीछे साइड में लाइटें लगी हुई है।

बीच में दो कुर्सियां भी रखी है कुर्सियों का रंग ब्लू है।

यह एक बगीचे का फोटो है यहां पर बहुत सारे फूल पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

पीछे साइड बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

सामने शायद एक टेबल भी है इसका रंग ब्राउन और व्हाइट कलर है।

इसके सामने ही बहुत सारे लोग सोए हुए है महिलाएं खड़ी हैं।

पीछे साइड भी परदे से सजाया गया है और लाइटिंग की गई है।

काले रंग का टेबल है दो बोतले है लाल लाल एक वाइट बोतले भी है।

तीन चार लोग खडे हुए है।

दो आदमी अंदर में टी शर्ट पहन के खड़ा है।

यह एक पार्टी की सजावट का दृश्य है जिसमें एक बच्चा घूम रहा है।

पीछे साइड ये घर भी दिखाई दे रहा है।

इसके ऊपर काले रंग के पोस्टर में लिखा हुआ है देसी स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट --

शीशे से घेरा हुआ है टेबल ।

सामने में तीन चार बाइके खड़ी हुई है।

आदमी के हाथ में एक प्लास्टिक है उसके ऊपर तीन चार कागजे पकड़ा हुआ है।

यह एक ऑफिस के सामने दृश्य का है।

पीछे में बहुत सारे पेड़ हैं जंगल की तरफ बहुत सारे पेड़ हैं।

छोटे बड़े पत्थर भी हैं पानी बहुत सारा बह रहा है।

टमाटर है लाल रंग के गाजर भी हैं बैगन भी हैं।

आलू रखी हुई है बैंगन है टमाटर है।

दीवार का रंग भी लाल है।

यह एक बहुत ही बड़े बिल्डिंग का दृश्य है।

और एक डिजी भी है बहुत सारे पेड़ भी हरे हरे हैं।

उसके अंदर तीन चार लोग खड़े हुए हैं।

पीछे में भी एक व्हाइट रंग की घर की बनी हुई है।

एक बहोत ही मालगाड़ी लंबी खड़ी हुई है ।

उसके सामने ही एक आदमी खड़ा है और उसके ऊपर भी लिखा हुआ है देवघर।

इसके नीचे काले रंग का कारपेट बिछाया हुआ है।

नीचे साइड में फ्लोर है और एक टी_वी भी रखा हुआ एल_सी_डी रंग काला है।

पीछे साइड में भी बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं बहोत सारे छोटे छोटे पौधे भी हैं।